एक बैग भी टंगा के है।

बेंच भी दिखाई दे रही है।

पीछे में ए_सी भी दिखाई दे रही है।

पैर पोछने वाले कारपेट भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सारे लोहे दिखाई दे रही है इंसान भी है।

बहोत सारे कार्टून भी हैं।

फ्लोर भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सारे डब्बे दिखाई दे रही है।

लोहे से बना हुआ एक गेट भी दिख रहा है।

आसमान भी दिख रहा है जिसका रंग नीला है।

घर भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में घर दिखाई दे रही है।

औल आकाश भी दिख रहा है।

दीवार भी दिख रहा है जिसका रंग सफेद है।